शैम्पू दिखाई दे रही है टे ह मीठा तेल दिखाई दे रहा है पाउडर दिखाई दे रहा है अ जो कि बहुत अच्छा है ए दुकान बहुत बढ़िया हैं ।

यहाँ एक नीला आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें सफेद बदरिया बादल से दिखाई दे रहे है बहुत सारे और एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा हैं।

ये एक लड़की का स्टैचू दिखाई दे रहा है जो कि कपड़े पहने हुए हैं उसमे एक चीठी तंगी हुए है बाल लगाए हुए है यहाँ पे फोनपे का वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कपड़े दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे --